जिसमें महिलाएँ हैं पुरुष हैं है ना और ऊपर छत पर चार पंखे लगे हुए हैं।

औऔर एक सामने बल्ली नज़र आ रही है जिस पे कपड़ा बंधा हुआ है।

और एक पुरुष है जो उन्हें योगा के बारे में समझा रहा है।

हैलो फ्रेंड्स देखिएगा सामने बहुत ही खूबसूरत सी झील दिखाई दे रही है।

हेलो फ्रेंड्स देखिएगा सामने एक सुन सान सी रोड नजर आ रही है।

रखे हुए हैं ऊपर एक रस्सी बाहंदी गई है जिस पर टांगने वाले गमले जो होते प्लास्टिक के --

वो ब ओ लाल कलर के नीले कलर के ऑरेंज कलर के गुलाबी कलर के सारे सजाए हुए हैं और काफी खूबसूरती गमले लग रहे हैं।

और सबके हाथों में गिटार है गिटार बजाना सीख रहे हैं सामने एक लेडिस हैं जो उन्हें गिटार बजाना सिखा रही हैं।

हाँ ढोलक है और गिटार है जो टंगी हुई है।

और सबकेएए पास देखो कलर की जो र अं आ रंगोली की कटोरी है।

और रंगोली बना रहे हैं रंगोली का फूल देखो कितना अच्छा लग रहा है।

और बो ये लाल हरे कलर का फूल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है सभी बैठकर रंगोली बना रहे हैं।

है ना और सबके प्राइस वगैरह लिखे गए हैं मैगी का पैकेट है।

जो फोन पर बातें कर रहा है और अ अ बाइक लगी हुई है अंदर ढेर सारी बाइक स्कूटी वगैरह दिख रही हैं।

और काफी बड़ा सा ये हॉल है ऊपर ढेर सारे पंखे लगे हुए हैं।